एक ऊपर के साइड है और एक नीचे के सा--

ने डॉक्टर का केबिन भी बना हुआ है और डॉक्टर का नाम है डॉक्टर गुप्ता पाटिल।

उन्होंने कुछ बॉक्सेस भी रखे हैं जो करीबन एक के ऊपर एक जमें हुए हैं और ये--

ये कुछ नास्ते की अं दुकान लगी हुई है।

ये आई थिंक एक ऑफिस तैयार हो रहा--

और बाउंड्री वॉल में --

बहोत सारे पैकेट एक करे में रखे हैं।

काफी ट्रैफ ट्राफीक है यहाँ पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे हैं मॉल हैं शॉपिंग --

चौकी लकड़ी का है और गोल्डन पॉलिश करा हुआ है और एक खूबसूरत सी नक्काशी करी हुई है और--

और ये बाहर की साइड पे रखा हुआ--

और फर्श जैसे पक्का टाइल्स बना हुआ है लगी हुई है और हरी ग्रीन कलर की है।

ये एक चर्च की पिक्चर है जहां पे काफी लोग खड़े हुए है।

ग्राउंड है शायद यहां बच् खेलने आते हैं।

कुछ नंबर भी डले हैं पीछे कॉउंटिंग के--

यहां पे कोई नई पैक करी हुई अ एक्टिवा रखी हुई है।

और लाइटिंग भी लगी है एक काउंटर पर जांच घटा--

और उसका कोट का कलर ब्राउन है अन्दर का शर्ट व्हाइट है।

अह उस कंपनी की जालियां रखी हैं बड़ी बड़ी।

और पास में एक दुकान परिवेश की--